जिसने भी बनाया बहोत ही खूबसूरत सा बनाया जिसने तस्वीर लिया है बहोत ही बढ़िया एंगल से तस्वीर--

ये जो तस्वीर है तस्वीर एक लाइक जैसे कि बताऊं कोई टेटू आर्टिस्ट का जो है स्टूडियो लग रहा है जिसमें--

अ बहोत बढ़िया दिन का समय का तस्वीर लग रहा है यह जो साइड बोर्ड है साइड बोर्ड में--

और कॉलेप्सिबल गेट भी लगा हुआ है इसमें ओनकर भी लिखा हुआ है जिसमें--

और जो स्टेशन जो सजा हुआ है बहुत ही बढ़िया हरे बरे पत्तों से सजा हुआ है फूलों के टब लगे हुए हैं रात का समय है लाइटिंग भी बहुत बढ़िया है।

नीला के साइड में छोटे-छोटे पेड़ भी नजर आ रहे हैं आसमान भी साफ लीला नजर आ रहा है जो--

और लाइटिंग भी जो है बहुत ही बढ़िया अलग तरीका से लाइटिंग है छोटे-छोटे पोस्टर भी लगा हुआ है पीछे में जो है बड़ा पोस्टर भी लगा हुआ है।

क्यू_आर कोड भी रखा हुआ है मेन्यू भी रखा हुआ है चेयर का जो सेटिंग है वो सब सब चेयर के सेटिंग --

रसोई का या कुछ तस्वीर दिखाया गया बहुत सारे पोस्टर्स है ऊपर में लाइट भी स्टाइलिश है।

पत्ते भी नजर आ रहे हैं वो दीवाल भी नजर आ रहे हैं बहुत ही खूबसूरत सा तस्वीर है दिन का समय है।

और साइन बोर्ड भी लगा हुआ है वहां पे जो लोग कुछ पढ़ सके और जो है नीला आसमान भी--

जो गार्डन है गार्डन को मेंटेन किया जाने वाला तस्वीर नजर आ रहा है छोटे-छोटे पौधे नजर आ रहे हैं।

ये जो तस्वीर ये जो है ये तस्वीर में जो है एक किताब के दुकान की तस्वीर दर्शाया गया है जहां बहोत सारे किताब रखे हुए हैं रंग बिरंगी का --